यह एक कार पय्ये वाहन का चित्र दिखाई दे रहा है।

वृक्ष दिखाई दे रहे है दीवार पर वाटिकाए दिखाई दे रही है।

यह एक नदी का चित्र दिखाई दे रहा है जीस के आसपास मकान दिखाई दे रहे हैं ऊपर से नदी पर पुल दिखाई दे रहा हे।